इस पीक में एक बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है ये मुझे लगता है शायद की गार्डन भी हो सकता है या पार्क भी है खुला आसमान भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन --

लाईटस और इसके द्वार इसके प्रवेश द्वार भी दिखाई दे रहा है तथा बहुत से लोग नजर आ रहे हैं।

तथा इस तालाब मे पानी भी दिखाई दे रहा हैं पानी में रहने वाली पेड़ तथा पौधे भी नजर आ रहे हैं खुले आसमान की रोशनी भी दिखाई दे --

तालाब के उस पार बहुत सा मैदान नजर इसमें पेड़ें ही पेडें दिखाई दे रहें हैं। खुला आसमान नजर आ रहा है सड़क दिखाई दे रही है।

इसमें लाइट्स के खंभे भी नजर आ रहे है तथा बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे है जिनसे तार निकली हुई है आसमान नजर आ रहे --